यह एक सब्जी की दुकान है .]

सामने बैठा एक आदमी सब्जी बेच रहा है और ऊपर से तिरपाल से छत की --